यहाँ पे कुछ पैकेटस भी रहे दिखाई दे रहे हैं दीवाल भी दिखाई दे रही है जिसका का कलर व्हाइट है।

पानी कूदता हुआ दिखाई दे रहा है यहाॅं पर कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे कारपेट दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रीन और रेड है | यहाँ पे कुछ फ़ूल लगे हुए हैं जिनका कलर रेड वाइट पिंक और गुलाबी है |

यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई दे रही है उसका कलर व्हाइट है यहां पे कुछ मालाये भी दिखाई दे रही हैं।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे लोहे का गेट लगा हुआ है और कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

ये बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैजिसकी दीवाल का कलर ग्रीन हैयहां----

कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही--

कुछ दिखाई दे रहे है यहां पे कुछ मकान भी दिखाई दे रहे है दीवाल का कलर व्हाइट और येल्लो है।

खंबे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से जमीन भी दिखाई दे रही है | यहाँ पे चेयर रखी हुई है जिनका कलर ग्रीन है।